पटरी पे कई प्रकार के ट्रेनें चलती रह--

आगे यहां पे काम कर रही हैं।

रोड के उस साइड बहुत ही बढ़ियें दुकान किए गए हैं।

इसमें एक शिक्षक खड़े हो के सबको पढ़ा रहे हैं।

ये आदमी देखने में बहुत ही--